यख पिछाड़ी फुण हम बिम छन दिखेण लग्यां पीलू मकान छा यख मा जी यख मकानम गुलाबी रंग छ होयुं।